दो औरतें बैठी हुई है एक फोन पे बात कर रही है एक स्टूल पे बैठी हुई है एक आदमी दिख रहा है सामान दिख रहा हैं।

यहाँ पर लकड़ियाँ भी रखी है बॉटले रखी है ग्लास रखा हैं।

इस चित्र में एक बड़ा- सा स्टेज दिख रहा हैबहुत- सी कुर्सियाँ लगी हुई हैं।

इनमे कोई लड़कियां दिख रही हैं जो व्यक्ति कर रही हैंये एक बाली लगाई हैं बिंदी लगाई हैं --

इसमे भी मछलियाँ हैं बहुत सी मछलियाँ हैं दुकानदार बेच रहे हैं खरीदने वाले खरीद रहे हैं जाली दिख रही है।

गेट दिख रहा हैं बहुत सी मछलियाँ हैं छोटे छोटे झींगे भी इत्ते छोटे छोटे झींगे भी हैं इत्ते बड़े बड़े झींगे भी--

इस चित्र मे एक मेला दिख रहा हैं जहां पे बहुत से तीर्थ दिख रहे हैंज्वेलरी दिख रही हैंचादरे छत से सेड दिख रही हैं लाइटे दिख रही हैं।

यहाँ पर कई किताबे दिख रही है लोग बहुत -सी किताबे खरीद रहे है कैलेंडर दिख रहे है इसमें कई तरह के पोस्टर बिक रहे हैं।